वो नम्बर बी लिखा है आस पास काफी कचरा बिखरा हुआ नसर आ रहा नजर आ रहा है।

स्टेज को अच्छे से सजाया गया है ब्लू कलर के कार्टेन्स लगे हैं बीच में एक बड़ा स्टार बना हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ बच्चे पार्क में काम अ--

और एक बड़ा टेबल है जिसमें लेडिस के पैड पड़े हुए है बाहर स्कैनर भी लगा हुआ--

बिल्डिंग के बाहर काफी गाड़ियां नीचे खड़ी हैं जो अलग-अलग कलर और डिजाइन मॉडल की हैं।

गमलो में पौधे लगे हैं और एक कमल का फूल नजर आ रहा है जो पिंक कलर का है।

ये तस्वीर का वेडिंग किया है जो वाइट कलर की पेंट की गई है।

दरवाजों पे काफी बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए है आस पास छोटे छोटे पौधों के गमले हैं।

और डॉक्टर ने मास्क पहने हुए हैं वो कंप्यूटर में देख रहे हैं कुछ।

ये तस्वीर एक सैलून की है जिसमें एक लड़का रेड कलर की जैकिट पहनी है।

और उसमें एक व्हाइट कलर की टॉयलेट सीट नजर आ रही है बीच में काफी बड़ा एक पूल बना हुआ है।